और वो कुछ बना रहे हैं कागज के साथ--

और बाहर गेट सा लगा हुआ है जो लोहे का--

और बाहर घास भी नजर आ--

और लोहे की शेड बनी हुई है अंदर लाइट --

ये एक बड़ी सी ग्राउंड सी नजर आ--

गार्डन के अंदर जमीन पर हरी हरी घास लगी हुई है।

बहुत सारी लाइटें लगी हुईं हैं रंग बी--

जे एक मिठाई की दुकान लग--

क्रीम रंग का और पट्टी है स्काई ब्लू रंग--

और खिडकी है ब्लैक सी रंग की है।

जे एक चर्च के बाहर की फोटो लग रही है जहां--

यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी अलमारियां सी प--

और बाहर लकड़ी के फ्रेम पड़े हुए हैं।